और यहां एक लड़का दिखाई दे रहा है और यहां लाइट्स लगी हुई है और--

और कुछ खिड़कियां भी लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहा हैं और दुकान--

और सीढ़ी भी बनी हुई है।

और यहां लाइट्स भी लगी हुई है।

जहां पे गाड़ी तो कुछ--

पाइप भी दिखाई दे रहे हैं।

मंगला जैसी कुछ दिख रहा है और--

भी रखे हुए हैं और शो पत्ते--